इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे लोग नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे घर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे आदमी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे टेंट भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे सी_सी_टी_वी कैमरा भी नजर आ रहा है।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

ये तस्वीर किसी बुक स्टोर की है।